यहां पर छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं हरे लाल और पीले रंग के कुछ फूल है उसमें गुलाबी रंग के--

मिट्टी पर हरा और काला रंग है पत्थर ब्लैक रंग का है।